और ऊपर लंच टाइम --

मेरे सामने एस_बी_आई बैंक --

और बाइक भी बहुत खड़ी है।

और कानन में हेडफोन लगा रा और नीली शर्ट पहन रा --

और आगे एक ब्लैक स्कॉर्पियो और वाइट फ़ौरचूनर खड़ी --

एक गाड़ी बारो --